टॉप एंड टाउन का पोस्टर लगाया हुआ है आइसक्रीम का और ये शीशे का दरवाजा लगाया गया है ।

पर नेट से खराब किया गया है एक पेड़ को तना आप पे हर सफेद और लाल रंग से रंग गया रंगा गया है|

और काफी भी मिल जाता है यहाँ--